दो लड़का है जो जिम सेंटर जिम करते हुऐ इन्जॉय कर रहे है और फोटो खिचवा रहे है और बाकी सब अपने जिम करने मे ससज करने मे लगे हुऐ है।

ये परफेक्ट लिखा हुआ कोई एंबुलेंस टाइप का चाहे कोई वैन है बाकी घर उर इधर दिख रहा है और कुछ ने दिख रहा है इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोल सकते जानकरी जितनी थी वो मैंने बता--

जिम सेंटर का फोटो है और जिम करते हुए कई सारे अ यहाँ पे बैठे हुए --